ये प्लेटफॉर्म है। यह बाहर का नजारा है। इस स्टेशन का नजारा है।

और चार्ट कोई प्रोजेक्ट दिए हैं मॅम ने ये कुर्सी है सर कुर्सी पर बैठे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई हंसी मजाक करें हैं।

और पूर्वजों ने इनके पता नहीं क्या होता है ये इनके तस्वीर है।

और एक बुक्स देख रहे हैं वो क्या फोटो खेंच रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं ये शॉप है इनकी बुक्स तरह तरह की मिलती है।

टंकी है बाल्टी है हवा भरने की मशीन है छपरा लगाया हुआ है और चार पांच मशीन है रेले लगाई है।

हर चीजी हर चीज में बिकती है।

ये इलेक्ट्रिक की दुकान है यहां पे लट्टू मिलता है अलग अलग कलर के लट्टू मिलते हैं।

और यहां पे लड़की खड़ी है बैठने की जिद कर रही है ये डी_जे लगा रखे हैं शादी के त्यौहार है।

रिसेप्शन हो रहा है टेंट लगा है खाना वाना अच्छा है बहोत अच्छा है खाना इनके परिवार का एकता से सब बढ़िया है।

वो अपने काम कर रहे हैं। स्टूल पर बैठे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। ये एक मकान के--

जैसे जैसलमेर सुबह सात बज के बीस मिनट पे चलती है एक टैक्सी खड़ी है प्लेटफार्म में छह नंबर छह नंबर तक है।

अह और ये तीन टैक्सी चार टैक्सी खड़ी है टैक्सी में सब लोग बैठे हैं उनका आदमी और सब काम कर रहे हैं अपने अपने --

और जाने की भी रास्ता है इस साइड भी जा सकते हैं इस जा सकते हैं ये बहोत अच्छी पौधे लगे हुए हैं हरियाली बहोत है।

ये ये एक गंगानगर चौराहा चौराहा में गाड़ी घूम रही है एक आध लुगाई जा रही है पुलिस की वो गेट लगा हुआ है ऊपर थम्बा लगा हुआ है।

और डायरेक्शन है कार है मोटरसाइकिल है आदमी जा रहा है और --

होटल में खाना अच्छा मिलता है एव तंदूर की रोटी मिलती है और--

ये पीली बंगा का स्टेशन है ये बोर्ड है ये जिले हैं जो रेलगाड़ी आती है और जाती है।

तरह तरह के सामान मिलते हैं पनीर की सब्जी शाही पनीर की चिकन और --

मोटरसाइकिल भी साफ होती है नहाते भी हैं अलग टाइप के सब काम होता है नहाना भी होते हैं वॉशिंग भी होता है।

ये लाइब्रेरी है यहां पे बच्चा पढ़ते हैं।